लाइन में खड़े व्यक्ति एक दूसरे से बात भी कर रहे है।

इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि यह एक मच्छी बाजार है।

इसके बाहर यह एक गार्डन है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और इसके सारे अ पुर्जे पुर्जे अलग हुए है इसमें दो तसले हैं एक बॉटल रखी हुई है।

इस पिक्चर में हम दे सकते है कि इसमें चार गर्ल्स है जिन्होंने खुद बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई है।

और पेंटिंग में यह उन्होंने हट बनाई है यह स्कूल की छात्रा है जो यूनिफॉर्म में है।

और एक रेडियम है जो व्हाइट कलर का है बाइस्क ब्लैक कलर की है एक लेडीज बैठी हुई है।

ये एक क्लास है इसमें स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट के सामने ए बुक्स रखी हुईं है ये चेयर्स पे बैठे हुए हैं।

यहां पर एक गार्डेन में बहोत सारे ए जेंट्स बैठे हुए हैं।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

यह एक गार्डन है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे है बड़े बड़े पेड़ भी है और छोटे छोटे पौधे हैं।